पानी शॉवर दो चेयर है ब्लैक कलर की ओर शेविंग करने के लिए शेविंग ब्रश --

ये हॉस्पिटल अं एस_के_आर हॉस्पिटल --